और बाकी लोग यहां खड़े होके मछलियां खरीद रहे हैं।

इस पिक्चर में देख सकते हैं यहां एक--

अपने साधनों से अपने-अपने घर जा रहे हैं।

दाढ़ी मूंछें इत्यादि बनवा के जाते हैं।

और कुछ गाड़ियां हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह दो पुलिस वाले हैं।